और यहाँ पे अच्छा लग रहा है। ओ एक आई.टी.आई. कॉलेज के आगे एक मकान है जिसमे ग्राउंड र --

किताब भी है गेस भी है और अम क्वेश्चन पेपर भी हैं। .

कुछ स्कुल कॉलेज का फंक्शन है। वहीँ कुछ टीचर भाषण देते हुए जा रहे हैं। बहुत सारे आदमी भी कुर्सी लगा कर बैठे हुए है। ऊपर में सजा हुआ है बहुत सारे यहाँ पर गाय लगे हुए हैं। खिडकियां हैं।